एक गार्डन है उसमें खंबा लगया है सामे एक चौकियां सा उस पर और चीज दिखाई दे रही है इधर पेड़ पौधे हैं।

उसके सामने मोटरसाइकिल खड़ी हैइधर नीचे कचरा वगेराह पड़े हैं सामने गेट हैउधर भी एक मंजिल है इधर भी छान है ऊपर उसके तार हैं इधर भी --

दीवारों पर लाइटा लगी है दोनों साइड लाइट लगी है इधर पेड़ वगेरे है सामने मोटर साइकिले चल रही है इधर भी आ रही है कई उधर जा रही है।

लाल कपड़े के ऊपर ऊपर एक वास लगी हुई है जिसके ऊपर कई दोनों काने लाइट लगी है की--

एक केलिया उसके सामने एक गेट है उसके ऊपर एक --

इधर भी गेट हैं एक बहुत लम्बी तार लगे है बहुत पेड़ पौधों दिख रहे है एक ऑफीस दिख रही है दो चार मोटर साईकिल दीख रही है गाड़ी दीख रही है इधर भी पेड़ पौधों दिख रहे --

बोतल पड़ी है टेबल पर इधर बहुत से कागज पड़ी है इधर टेबल पड़े हैं ईधर पर्दा लगा हुआ इधर एक गेट है एक एलसीडी लगी है इधर कांचका हॉल सा हैं।